यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है और एक आदमी उसकी पीठ में कुछ मशीन चला रहा है और खिड़की है खिड़की में--

दोनों फोटो खींचा रहे है उनके साइड में लाइट लगा है और येलो रेड ग्रीन कलर फूल लगा है।

साईड में एक आदमी फोन में बात करता दिख रहा है और अंदर में कुछ कुछ रखा हुआ है बाईक का हैंडल दिख रहा हैं।

यहां पर एक रास्ता जैसा बना हुआ है।